यहां पर मुझे जिम दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे हरे कलर की घास चारे दिखाई दे रहे है।

यहां पर मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है है।

यहां पर कुछ कॉपी किताब की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा एना लगा--

यहां पर मुझे कुछ कुर्सियां ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर मुझे कांच की टेबिल दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कुछ समान जमा हुआ दिखाई--

दे रही है यहाँ मुझे उस पलंग में चार पाए नजर आ रहे है।

यहां मुझे जमीन पर च कारपेट बिछा दिख रहा है।

यहां मुझे जमीन पर वाइट कलर की टाइल्स लगी दिखाई--